एक हॉस्पिटल या कोई बड़ा-सा हॉल जैसा दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बेंच जैसे लगे हैं कुर्सी है जो जिसमें आदमी बैठ के इंतजार कर सके।

जिसमें नीले-नीले पानी है और ब्लू कलर का लकीर जैसा बना हुआ है और यहाँ पे कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है।